यह एक बहुत बड़ा पत्थर है जिस पे एक आदमी बैठा हुआ है और नीचे में बहुत सारे विलेज हैं बहुत सारे लोग हैं। यहाँ पर पत्थर बहुत ही अमेजिंग हैं।